conversion of excel data to marc 21 format पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम64bit windows machine पर excel data को marc 21 format में परिवर्तित करना सीखेंगे
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूं windows 10 pro
इस tutorial का अनुकरण करने के लिए शिक्षार्थियों को library science से परिचित होना चाहिए
आगे बढ़ने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि आपके machine पर निम्नलिखित है
कोई भी वेब ब्राउज़र उदाहरण के लिए: internet explorer firefox या google chrome
इससे पहले उसी श्रृंखला में हमने desktop पर marcedit 7 संस्थापित किया था
आइकन पर क्लिक करके उसी marcedit 7 को खोलें
marcedit 70250 by terry reese नामक विंडो खुलता है
export tab delimited text टैब पर जाएँ और इस पर क्लिक करें
source file field फिल्ड में folder आइकन पर जाएँ
source file एक excel file है जिसे हम mrk format में परिवर्तित कर रहे हैं
folder आइकन पर क्लिक करें और file name के लिए field में excel file के लिए ब्राउज करें
file name के समीप स्थित ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें
यदि आपके पास microsoft excel 97/2000/xp/2003 xls है तो excel file*xls फोर्मेट चुनें
और यदि आपके पास microsoft excel 2007/2010/2013 xmlxlsx है तो excel file*xlsx फोर्मेट चुनें
जैसे कि मेरे पास dotxlsx file है तो मैं excel xml file*xlsx चुनूँगी
इसके बाद बाएं तरफ फ़ोल्डर्स पर जाएं और उस फ़ोल्डर का चयन करें जहां आपकी excel file सेव है
मैंने downloads चुना है क्योंकि यहाँ मैंने अपनी excel file सेव की है
अत: downloads फोल्डर से मैंने testdataxlsx चुना है
जब testdataxlsx फाइल चयनित हो जाती है तो यह file name field में दिखाई देती है
अब window के नीचे open button पर click करें
source file c: \users\spoken\downloads\testdata xlsx के रूप में वही window फिर से खुलता है
अब output file के समीप folder icon पर click करें
ऐसा करने पर save file window खुलती है जो हमें file name: भरने के लिए कहती है
उसी विंडो पर मैं बाईं ओर स्थित downloads फ़ोल्डर पर क्लिक करूंगी
अब पेज के नीचे save बटन पर क्लिक करें
समान विंडो फिर से प्रदर्शित होता है
ध्यान दें excel sheet name: sheet1 marcedit 7 द्वारा स्वचालित रूप से चुना जाता है
options सेक्शन में
उसी विंडो के दाईं ओर next बटन पर क्लिक करें
फिर से marcedit delimited text translator नया विंडो खुलता है data snapshot शीर्षक है
excel file में की गई प्रविष्टियों के अनुसार इस विंडो में सभी field विवरण होंगे
हम 0 से 8 की fields रैंज देखेंगे और उससे संबधित ऊपर की वैल्यू
उदाहरण के लिए field 0 की वैल्यू मेरी मशीन पर 9783319472386 isbn है
आप अपने excel sheet के अनुसार एक अलग वै्ल्यू देख सकते हैं
datasnapshot सेक्शन में settings सेक्शन पर जाएँ
select टैब पर जाएँ और ड्रॉपडाउन से field 0 चुनें
इसके साथ हम koha marc tags के साथ excel dataमैपिंग करेंगे
याद रखें: आप map to: और indicators को कस्टमाइज़ कर सकते हैं
हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि fields और subfield codes koha marc tag के अनुसार हैं
marc tags पर अधिक जानकारी के लिए library of congress की ऑफिसियल साइट पर जाएं
ब्राउज़र पर यह url टाइप करें और सर्च पर क्लिक करें
याद रखें map to: वैल्यू field में प्रविष्ट है जिसे इस श्रृंखला में पहले के ट्यूटोरियल से संदर्भित किया गया है
यह अनुक्रम आपके excel data के अनुसार बदल जाएगा
मैं indicatorsऔर term punctuation को ऐसे ही छोड़ दूंगी
अगला constant data चैकबॉक्स है
इसे क्लिक करें यदि आप सीमांकित टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में प्रत्येक प्रविष्टि के लिए डेटाफील्ड में समान जानकारी को मैप करना चाहते हैं
यदि आप वही subfield दोहराना चाहते हैं तो repeatable subfield पर क्लिक करें
फिर add argument बटन पर क्लिक करें
सभी fields को मैप करें
settings सेक्शन में select पर जाएँ ड्रॉपडाउन से field 1 चुनें
map to फिल्ड में 080$a टाइप करें
अब add argument बटन पर क्लिक करें
select टैब में ड्रॉपडाउन से field 2 चुनें
map to फिल्ड में 100$a टाइप करें
indicators फिल्ड में 1 टाइप करें
इसी प्रकार field 13तक सभी फिल्ड्स के मैपिंग को पूरा करें जैसे select ड्रॉप डाउन में दिखाए जा रहे हैं
प्रत्येक फिल्ड के नजदीक अप और डाउन ऐरो पर ध्यान दें
आप इनका उपयोग वैल्यू का अनुक्रम बदलने के लिए कर सकते हैं
arguments सेक्शन में tags जो अलगअलग subfields के साथ कॉमन हैं को शामिल होने की आवश्यकता है
इसके लिए निम्नलिखित करें common tags उदाहरण के लिए 245$a और 245$c चुनें
फिर common tags पर राइटक्लिक करें और ड्रॉप डाउन से join items चुनें
यह fields का समूह बनायेगा जो एक ही प्रकार के होते हैं
ध्यान दें कि * asterisk symbol चयनित tags से पहले दिखाई देगा
* asterisk symbol इंगित करता है कि कॉमन tags अब शामिल हो गए हैं
वैकल्पिक रूप से आप arguments के लिए प्रदान किए गए 0 से 13 फिल्ड से संबंधित fields की वैल्यू को इंपोर्ट करने के लिए auto generate टैब पर क्लिक करके fields मैपिंग कर सकते हैं
हालांकि मैंने मैन्युअल रूप से मैपिंग किया है इसलिए मैं auto generate ऑप्शन पर क्लिक नहीं करूंगी
इसके बाद हम चार ऑप्शन्स देखते हैं
पहला save template है
यदि आप भविष्य के उपयोग के लिए mapping को सेव करना चाहते हैं तो इसका उपयोग करें
यदि आपको डेटा रूपांतरण के समय कोई भी समस्या होती है तो saved template का उपयोग किया जाएगा
यदि हम save template ऑप्शन चुनते हैं तो हमें इसे नाम देने के लिए कहा जाएगा और इसे सेव के लिए डाइरेक्टरी निर्दिष्ट करेंगे
मैंने इसे mrd file के रूप में सेव करूंगी
विंडो के दाईं ओर load template पर क्लिक करके भविष्य के उपयोग के लिए इस template को एक्सेस करें
दूसरा ऑप्शन sort fields है
तीसरा ऑप्शन calculate common nonfiling data है
चौथा ऑप्शन ignore header row है
इनमें से sort fields और calculate common nonfiling data marcedit 7 द्वारा स्वतः चुने गए हैं
अब मैं save template और ignore header row चैकबॉक्स को चैक करूंगी
इसके बाद पेज के ऊपरी दाएं कोने पर finish टैब पर जाएँ और क्लिक करें
ऐसा करने पर save file विंडो खुलती है हमें file name भरने के लिए कहता है
उसी विंडो पर मैं बाईं ओर स्थित downloads फ़ोल्डर पर क्लिक करूंगी
अब पेज के नीचे save बटन पर क्लिक करें
process has been finished records saved to: मैसेज के साथ विंडो पॉपअप होता है
डायलॉग बॉक्स के नीचे ok बटन पर क्लिक करें
इसी के साथ mrk फाइल downloads फोल्डर में सफलतापूर्वक सेव हो गई है
marcedit 70250 by terry reese नामक नया पेज खुलता है
marceditor नामक नया पेज खुलता है
open file विंडो खुलता है और testdatamrk फाइल प्रदर्शित करता है
क्लिक और testdatamrk फाइल चुनें यह file name में दिखेगा
अब विंडो के नीचे open पर क्लिक करें
सभी विवरण के साथ एक ओर marceditor: testdatamrk नामक विंडो खुलता है
उसी विंडो पर मुख्य मेनू से file पर क्लिक करें
अब ड्रॉप डाउन से compile file into marc चुनें
save file नामक नईं विंडो खुलती है यहाँ file name पर जाएँ और field में उपयुक्त नाम टाइप करें
मैं testdata टाइप करूंगी
koha डिफॉल्ट रूप से save as type फिल्ड में marc files *mrc चुनता है
अब विंडो के नीचे स्थित save बटन पर क्लिक करें
ऐसा करने पर नीचे की ओर उसी विंडो पर आप 5 records processed in 0166228 seconds देखेंगे
ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने केवल 5 records इंपोर्ट किया था आपको अपने डेटा के अनुसार records और संसाधित समय की एक अलग संख्या दिखाई देगी
इसके साथ हमने अपनी लाइब्रेरी के excel data को marc 21फोर्मेट में सफलतापूर्वक बदल दिया है
koha में डेटा को कैटलॉगिंग और इंपोर्टिग करने के लिए koha में उपयोगित marc 21 फोर्मेट एक मानक फोर्मेट है
अब इस विंडो को बंद करें ऐसा करने के लिए ऊपरी दाएं कोने पर जाएं और close बटन पर क्लिक करें
संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने 64bit windows मशीन पर excel data को marc 21 format में परिवर्तित करना सीखा
नियतकार्य के रूप में
निम्नलिखित link पर video spoken tutorial project का सारांश देता है
spoken tutorial project team कार्यशालाएं आयोजित करती है और प्रमाण पत्र देती है
कृपया मिनट और सेकंड के साथ अपने प्रश्नों को इस फोरम में पोस्ट करें
spoken tutorial project एनएमईआईसीटी एमएचआरडी भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं ज्योति सोलंकी आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद